और ठेला लगा हुआ है गाड़ियां खड़ी हुई है और सड़क के जस्ट बगल में दुकानें है।

और टेबल है टेबल में चश्मा रखा हुआ है।

और कुछ इंसान बाइक से आ जा रहे हैं।

और बहुत सारे पेड़-पौधे अगल-बगल लगे हुए हैं।

एक बारात घर है बारात घर में सामने--

बगल में लाइटें लगी हुई हैं सामने बहुत सारे फूल लगे हुए हैं बगल में अह कुछ रखा हुआ है।

गाड़ियां बहुत सारी खड़ी है कार्यालय के अंदर एक पेड़ है।

और अ कोई सर जो है मैम को अवार्ड दे रहे हैं।

दुकान में बहुत सारे रंग-बिरंगे सूट हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें किसी चीज़ का प्रचार कर रहा है मास्क एंड सावधानी मास्क एक सावधानी है लिखा है उसके --

एक गांव है गांव में छोटा सा घर बना है घर के अ सामने छोटी सी पकडंडी गली है।

स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और तीन पेशेंट दो पेशेंट खड़े हैं और एक लेडिस बैठी है।

और पीछे एक टेबल में बैठी--

सामने उसका नाम लिखा हुआ है फ्रंट पे जाने के लिए कांच का गेट बना हुआ है।

जस्ट घर के बगल में टाली रखी हुई है।

एक होटल है होटल काफी बहुत बड़ा है।

यह एक मिष्टान भंडार है यहाँ बहुत सारी मिठाइयां जैसे लड्डू हो गया जलेबी हो गया।

कैफे के जस्ट अंदर एंट्री करते समय अ फ्लैक्स लगा हुआ झंडा लगा हुआ है।

मंदिर के सामने खुरदुरी जमीन है।

गार्डन में सजावट चल रही है शादी घर सामने--

अ के दीवालों में काफी पोस्टर लगा हुआ है एक पोस्टर में लिखा है कुमार डिजिटल प्रिंट एंड प्रिंटर के आर।

कुछ लोग देख रहे हैं बहोत सारे इस्टुमेट रखें हुए हैं अलग अलग तरीके के जिसमें इंसान जिम करता है।